पोस्टर लगे हुऐ है |

मुझे इस इमेज में एक स्टेशन दिखाई दे रहा है। स्टेशन के अंदर बहुत सारी बसें ऑटोरिक्शा --

वो एक मंदिर भी है जो पूरा व्हाइट कलर का है।

और एक लड़की जा भी रही है।

एक लड़का साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हे ।

इसमें कुछ सीढियां भी दिखाई दे रही हैं।

इसमें आसमान भी दिखाई दे रहा है और एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

यह शुभ विवाह भी दिखाई दे रहा है।

और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक लड़का दिखाई दे रहा है जो अपनी हेयरस्टाइल दिखा रहा है।